हैं जहां पर कुछ यात्री गण आते जाते दिखाई--

सारे मकान दिखाई दे रहे है और--

बड़ी सी कॉस्मेटिक दिखाई--

कुछ कुर्सियां रखी हुई दिखाई दे रही है और--

इस फोटो में हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे र--

है जहां पर कुछ पोस्ट --

दुकान दिखाई दे रही हैं जहां पर तरह तरह की मिठाइयां रखी हुई--

दे रहे हैं और कुछ आते जाते यात्री भी दिखाई दे रहे हैं।

दे रहे हैं और हरे भरे पेड़--

फोटो में हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग --

सैलून दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ सीटें रखी हुई दिखाई दे रही--